मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आज विजयादशमी यानि दशहरे का पर्व है
इस पावन अवसर पर आप सभी को ढ़ेरों शुभकामनाएं
दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है
लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है
आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है
पहले दुर्गा पंडाल में माँ के दर्शनों के लिए इतनी भीड़ जुट जाती थी एकदम मेले जैसा माहौल रहता था लेकिन इस बार ऐसा नही हो पाया
पहले दशहरे पर भी बड़ेबड़े मेले लगते थे लेकिन इस बार उनका स्वरुप भी अलग ही है
रामलीला का त्योहार भी उसका बहुत बड़ा आकर्षण था लेकिन उसमें भी कुछनकुछ पाबंदियाँ लगी हैं
पहले नवरात्र पर गुजरात के गरबा की गूंज हर तरफ़ छाई रहती थी इस बार बड़ेबड़े आयोजन सब बंद हैं
अभी आगे और भी कई पर्व आने वाले हैं
अभी ईद है शरद पूर्णिमा है वाल्मीकि जयंती है फिर धनतेरस दिवाली भाईदूज छठी मैया की पूजा है गुरु नानक देव जी की जयंती है कोरोना के इस संकट काल में हमें संयम से ही काम लेना है मर्यादा में ही रहना है
जब हम त्योहार की बात करते हैं तैयारी करते हैं तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है क्याक्या खरीदारी करनी है ख़ासकर बच्चों में तो इसका विशेष उत्साह रहता है इस बार त्योहार पर नया क्या मिलने वाला है त्योहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एकदूसरे से जुड़ी हुई है
लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जायें तो वोकल फोर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें
बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है
त्योहारों के इस हर्षोल्लास के बीच में लॉकडाउन के समय को भी याद करना चाहिए
लॉकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करीब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता सफाई कर्मचारी घर में काम करने वाले भाईबहन लोकल सब्जी वाले दूध वाले सिक्यूरिटी गार्ड्स इन सबका हमारे जीवन में क्या रोल है हमने अब भलीभांति महसूस किया है
कठिन समय में ये आपके साथ थे हम सबके साथ थे
अब अपने पर्वों में अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है
मेरा आग्रह है कि जैसे भी संभव हो इन्हें अपनी खुशियों में जरुर शामिल करिये
परिवार के सदस्य की तरह करिये फिर आप देखिये आपकी खुशियाँ कितनी बढ़ जाती हैं
हमें अपने उन जाबाज़ सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं
भारतमाता की सेवा और सुरक्षा कर रहें हैं
हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं
हमें घर में एक दीया भारत माता के इन वीर बेटेबेटियों के सम्मान में भी जलाना है
मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भले ही सीमा पर हैं लेकिन पूरा देश आपके साथ हैं आपके लिए कामना कर रहा है
मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूँ जिनके बेटेबेटियाँ आज सरहद पर हैं
हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसीनकिसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है अपने परिवार से दूर है मैं ह्रदय से उसका आभार प्रकट करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो
आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की फान हो रही है
हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है
जैसे एक उदाहरण है खादी का
लम्बे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है लेकिन हमारी खादी आज ईसीओ फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है
स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है अल्ल वीथर फैब्रिक है और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है
खादी की पॉपुलेरिटी तो बढ़ ही रही है साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है
मेक्सिको में एक जगह है ओहाकाOaxaca
इस इलाके में कई गाँव ऐसे है जहाँ स्थानीय ग्रामीण खादी बुनने का काम करते है
आज यहाँ की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है
ओहाका में खादी कैसे पहुँचीं ये भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है
दरअसल मेक्सिको के एक युवा मार्क ब्राउन ने एक बार महात्मा गाँधी पर एक फिल्म देखी
ब्राउन ये फिल्म देखकर बापू से इतना प्रभावित हुए कि वो भारत में बापू के आश्रम आये और बापू के बारे में और गहराई से जानासमझा
तब ब्राउन को एहसास हुआ कि खादी केवल एक कपड़ा ही नहीं है बल्कि ये तो एक पूरी जीवन पद्धति है
इससे किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता का दर्शन जुड़ा है ब्राउन इससे बहुत प्रभावित हुए
यहीं से ब्राउन ने ठाना कि वो मेक्सिको में जाकर खादी का काम शुरू करेंगे
उन्होंने मेक्सिको के ओहाका में ग्रामीणों को खादी का काम सिखाया उन्हें प्रशिक्षित किया और आज ओहाका खादी एक ब्रांड बन गया है
इस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर लिखा है थे सिम्बोल ओएफ धर्मा इन Motion
इस वेबसाइट में मार्क ब्राउन का बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू भी मिलेगा
वे बताते हैं कि शुरू में लोग खादी को लेकर संदेह में थे परन्तु आख़िरकार इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ी और इसका बाज़ार तैयार हो गया
ये कहते हैं ये रामराज्य से जुड़ी बातें हैं जब आप लोगों की जरूरतों को पूरा करते है तो फिर लोग भी आपसे जुड़ने चले आते हैं
दिल्ली के कॉनॉग्ट प्लेस के खादी स्टोर में इस बार गाँधी जयंती पर एक ही दिन में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की खरीदारी हुई
इसी तरह कोरोना के समय में खादी के मास्क भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं
देशभर में कई जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दूसरी संस्थाएँ खादी के मास्क बना रहे हैं
यूपी में बाराबंकी में एक महिला हैं सुमन देवी जी
सुमन जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपनी साथी महिलाओं के साथ मिलकर खादी मास्क बनाना शुरू किया
धीरेधीरे उनके साथ अन्य महिलाएँ भी जुड़ती चली गई अब वे सभी मिलकर हजारों खादी मास्क बना रही हैं
हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की खूबी है कि उनके साथ अक्सर एक पूरा दर्शन जुड़ा होता है
मेरे प्यारे देशवासियो
जब हमें अपनी चीजों पर गर्व होता है तो दुनिया में भी उनके प्रति जिज्ञासा बढती है
जैसे हमारे आध्यात्म ने योग ने आयुर्वेद ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है
हमारे कई खेल भी दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं
आजकल हमारा मलखम्ब भी अनेकों देशों में प्रचलित हो रहा है
अमेरिका में चिन्मय पाटणकर और प्रज्ञा पाटणकर ने जब अपने घर से ही मलखम्ब सिखाना शुरू किया था तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इसे इतनी सफलता मिलेगी
अमेरिका में आज कई स्थानों पर मलखम्ब ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं
बड़ी संख्या में अमेरिका के युवा इससे जुड़ रहे हैं मलखम्ब सीख रहे हैं
आज जर्मनी हो पोलैंड हो मलेशिया हो ऐसे करीब 20 अन्य देशो में भी मलखम्ब खूब पॉपुलर हो रहा है
अब तो इसकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप शुरू की गई है जिसमें कई देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं
भारत में तो प्रचीन काल से कई ऐसे खेल रहे हैं जो हमारे भीतर एक असाधारण विकास करते हैं
हमारे माइंड बॉडी बैलेंस को एक नए आयाम पर ले जाते हैं
लेकिन संभवतः नई पीढ़ी के हमारे युवा साथी मलखम्ब से उतना परिचित ना हों
आप इसे इन्टरनेट पर जरूर सर्च करिए और देखिये
हमारे देश मे कितनी ही मार्शियल आर्ट्स हैं
मैं चाहूँगा कि हमारे युवासाथी इनके बारे में भी जाने इन्हें सीखें और समय के हिसाब से इनोवेट भी करे
जब जीवन मे बड़ी चुनौतियाँ नहीं होती हैं तो व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ भी बाहर निकल कर नहीं आता है
इसलिए अपने आप को हमेशा चैलेंज करते रहिए
मेरे प्यारे देशवासियो
कहा जाता है लर्निंग इस Growing
आज मन की बात में मैं आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराऊँगा जिसमें एक अनोखा जुनून है
ये जुनून है दूसरों के साथ रीडिंग और लर्निंग की खुशियों को बाँटने का
ये हैं पोन मरियप्पन पोन मरियप्पन तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में रहते है
तुतुकुड़ी को पियर्ल सिटी यानि मोतियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है
यह कभी पांडियन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था
यहाँ रहने वाले मेरे दोस्त पोन मरियप्पन हैर कटिंग के पेशे से जुड़े हैं और एक सलून चलाते हैं
बहुत छोटा सा सलून है
उन्होंने एक अनोखा और प्रेरणादायी काम किया है
अपने सलून के एक हिस्से को ही पुस्तकालय बना दिया है
यदि व्यक्ति सलून में अपनी बारी का इंतज़ार करने के दौरान वहाँ कुछ पढ़ता है और जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा लिखता है तो पोन मरियप्पन जी उस ग्राहक को डिस्काउंट देते हैं है न मजेदार
आइये तुतुकुड़ी चलते हैं पोन मरियप्पन जी से बात करते हैं
पोन मरियप्पन जी वणकम्म नल्ला इर किंगडा
पोन मरियप्पन जी वणकम्म
तमिल में जवाब
माननीय प्रधानमंत्री जी वणकम्म नमस्कार
वणकम्म वणकम्म उन्गलक्के इन्द लाइब्रेरी आइडिया येप्पड़ी वन्ददा
वणकम्म वणकम्म
आपको ये पुस्तकालय का जो आईडीईए है ये कैसे आया
तमिल में जवाब
पोन मरियप्पन के उत्तर का हिंदी अनुवाद मैं आठवीं कक्षा तक पढ़ा हूँ
उसके आगे मेरी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा ना सका
जब मैं पढ़ेलिखे आदमियों को देखता हूँ तब मेरे मन में एक कमी महसूस हो रही थी
इसीलिये मेरे मन में ये आया कि हम क्यों ना एक पुस्तकालय स्थापित करें और उससे बहुत से लोगों को ये लाभ होगा यही मेरे लिये एक प्रेरणा बनी
उन्गलक्के येन्द पुत्तहम पिडिक्कुम
आपको कौन सी पुस्तक बहुत पसन्द है
पोन मरियप्पन पोन मरियप्पन मुझे तिरुकुरुल बहुत प्रिय है
उन्गकिट्ट पेसीयदिल येनक्क
रोम्बा मगिलची
नल वाड़ तुक्कल
आपसे बात करने में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई
आपको बहुत शुभकामनाएं
तमिल में जवाब
मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करते हुए अति प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ
नल वाड़ तुक्कल
धन्यवाद प्रधानमंत्री जी
हमनें अभी पोन मरियप्पन जी से बात की
देखिये कैसे वो लोगों के बालों को तो संवारते ही हैं उन्हें अपना जीवन संवारने का भी अवसर देते हैं
थिरुकुरल की लोकप्रियता के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा
थिरुकुरल की लोकप्रियता के बारे आप सबने भी सुना
आज हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं में थिरुकुरल उपलब्ध है
अगर मौक़ा मिले तो ज़रूर पढ़ना चाहिए
जीवन के लिए वह एक प्रकार से मार्ग दर्शक है
लेकिन आपको ये जानकार खुशी होगी कि पूरे भारत में अनेक लोग हैं जिन्हें ज्ञान के प्रसार से अपार खुशी मिलती है
ये वो लोग हैं जो हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि हर कोई पढ़ने के लिए प्रेरित हो
मध्य प्रदेश के सिंगरौली की शिक्षिका उषा दुबे जी ने तो स्कूटी को ही मोबाइल लाइब्रेरी में बदल दिया
वे प्रतिदिन अपने चलतेफिरते पुस्तकालय के साथ किसी न किसी गाँव में पहुँच जाती हैं और वहाँ बच्चों को पढ़ाती हैं
बच्चे उन्हें प्यार से किताबों वाली दीदी कह कर बुलाते हैं
इस साल अगस्त में अरुणाचल प्रदेश के निरजुली के रायो विलेज में एक सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी बनाई गई है
दरअसल यहाँ की मीना गुरुंग और दिवांग होसाई को जब पता चला कि कस्बे में कोई लाइब्रेरी नहीं है तो उन्होंने इसकी फंडिंग के लिए हाथ बढ़ाया
आपको ये जानकार हैरानी होगी कि इस लाइब्रेरी के लिए कोई मेंबरशिप ही नहीं है
कोई भी व्यक्ति दो हफ्ते के लिए किताब ले जा सकता है
पढ़ने के बाद उसे वापस करना होता है
ये लाइब्रेरी सातों दिन चौबीसों घंटे खुली रहती है
आसपड़ोस के अभिभावक यह देखकर काफी खुश हैं कि उनके बच्चे किताब पढ़ने में जुटे हैं
खासकर उस समय जब स्कूलों ने भी ओनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं
वहीं चंडीगढ़ में एक एनजीओ चलाने वाले संदीप कुमार जी ने एक मिनी वन में मोबाइल लाइब्रेरी बनाई है इसके माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त में बुक्स दी जाती हैं
इसके साथ ही गुजरात के भावनगर की भी दो संस्थाओं के बारे में जानता हूँ जो बेहतरीन कार्य कर रही हैं
उनमें से एक है विकास वर्तुल ट्रस्ट
यह संस्था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत मददगार है
यह ट्रस्ट 1975 से काम कर रहा है और ये 5000 पुस्तकों के साथ 140 से अधिक मैगज़ीन उपलब्ध कराता है
ऐसी एक संस्था पुस्तक परब है
ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो साहित्यिक पुस्तकों के साथ ही दूसरी किताबें निशुल्क उपलब्ध कराते हैं
इस लाइब्रेरी में आध्यात्मिक आयुर्वेदिक उपचार और कई अन्य विषयों से सम्बंधित पुस्तकें भी शामिल हैं
यदि आपको इस तरह के और प्रयासों के बारे में कुछ पता है तो मेरा आग्रह है कि आप उसे सोशल मीडिया पर जरुर साझा करें
ये उदाहरण पुस्तक पढ़ने या पुस्तकालय खोलने तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह उस नए भारत की भावना का भी प्रतीक है जिसमें समाज के विकास के लिए हर क्षेत्र और हर तबके के लोग नएनए और इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं
गीता में कहा गया है
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते
अर्थात ज्ञान के समान संसार में कुछ भी पवित्र नहीं हैं
मैं ज्ञान का प्रसार करने वाले ऐसे नेक प्रयास करने वाले सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो
कुछ ही दिनों बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती 31 अक्टूबर को हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाएंगे
मन की बात में पहले भी हमने सरदार पटेल पर विस्तार से बात की है
हमने उनके विराट व्यक्तित्व के कई आयामों पर चर्चा की है
बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके व्यक्तित्व में एक साथ कई सारे तत्व मौजूद हों वैचारिक गहराई नैतिक साहस राजनैतिक विलक्षणता कृषि क्षेत्र का गहरा ज्ञान और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण भाव
क्या आप सरदार पटेल के बारे में एक बात जानते हैं जो उनके सेंसे ओएफ ह्यूमर को दर्शाती है
जरा उस लौहपुरुष की छवि की कल्पना कीजिये जो राजेरजवाड़ों से बात कर रहे थे पूज्य बापू के जनआंदोलन का प्रबंधन कर रहे थे साथ ही अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ रहे थे और इन सब के बीच भी उनका सेंसे ओएफ ह्यूमर पूरे रंग में होता था
बापू ने सरदार पटेल के बारे में कहा था उनकी विनोदपूर्ण बातें मुझे इतना हँसाती थी कि हँसतेहँसते पेट में बल पड़ जाते थे ऐसा दिन में एक बार नहीं कईकई बार होता था
इसमें हमारे लिए भी एक सीख है परिस्थितियाँ कितनी भी विषम क्योँ न हो अपने सेंसे ओएफ ह्यूमर को जिंदा रखिये यह हमें सहज तो रखेगा ही हम अपनी समस्या का समाधान भी निकाल पायेंगे आई सरदार साहब ने यही तो किया था
मेरे प्यारे देशवासियो
सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एकजुटता के लिए समर्पित कर दिया
उन्होंने भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता आन्दोलन से जोड़ा
उन्होंने आजादी के साथ किसानों के मुद्दों को जोड़ने का काम किया
उन्होंने राजेरजवाड़ो को हमारे राष्ट्र के साथ एक करने का काम किया
वे विविधिता में एकता के मंत्र को हर भारतीय के मन में जगा रहे थेआई
आज हमें अपनी वाणी अपने व्यवहार अपने कर्म से हर पल उन सब चीजों को आगे बढ़ाना है जो हमें एक करे जो देश के एक भाग में रहने वाले नागरिक के मन में दूसरे कोने में रहने वाले नागरिक के लिए सहजता और अपनत्व का भाव पैदा कर सके
हमारे पूर्वजों ने सदियों से ये प्रयास निरंतर किए हैं आई अब देखिये केरल में जन्मे पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने भारत की चारों दिशाओं में चार महत्वपूर्ण मठों की स्थापना की उत्तर में बद्रिकाश्रम पूर्व में पूरी दक्षिण में श्रृंगेरी और पश्चिम में द्वारका आई उन्होंने श्रीनगर की यात्रा भी की यही कारण है कि वहाँ एक शंक्राचार्य हिल है आई तीर्थाटन अपने आप में भारत को एक सूत्र में पिरोता है
ज्योर्तिलिंगो और शक्तिपीठों की श्रृंखला भारत को एक सूत्र में बांधती है
त्रिपुरा से ले कर गुजरात तक जम्मूकश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक स्थापित हमारे आस्था के केंद्र हमें एक करते हैं
भक्ति आन्दोलन पूरे भारत में एक बड़ा जनआन्दोलन बन गया जिसने हमें भक्ति के माध्यम से एकजुट किया आई हमारे नित्य जीवन में भी ये बातें कैसे घुल गयी हैं जिसमें एकता की ताकत है
प्रत्येक अनुष्ठान से पहले विभिन्न नदियों का आह्वान किया जाता है इसमें सुदूर उत्तर में स्थित सिन्धु नदी से लेकर दक्षिण भारत की जीवनदायिनी कावेरी नदी तक शामिल है
अक्सर हमारे यहाँ लोग कहते हैं स्नान करते समय पवित्र भाव से एकता का मंत्र ही बोलते हैं
गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती आई
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेSस्मिन् सन्निधिं कुरु ईआई
इसी प्रकार सिखों के पवित्र स्थलों में नांदेड़ साहिब और पटना साहिब गुरूद्वारे शामिल हैं
हमारे सिख गुरुओं ने भी अपने जीवन और सद्कार्यों के माध्यम से एकता की भावना को प्रगाढ़ किया है
पिछली शताब्दी में हमारे देश में डॉ बाबासाहब अम्बेडकर जैसी महान विभूतियाँ रहीं हैं जिन्होंने हम सभी को संविधान के माध्यम से एकजुट किया
यूनिटी इस पॉवर यूनिटी इस स्ट्रेंग्थ
यूनिटी इस प्रोग्रेस यूनिटी इस एम्पावरमेंट
यूनाइटेड वे विल स्केल न्यू हाइट्स
वैसे ऐसी ताकतें भी मौजूद रही हैं जो निरंतर हमारे मन में संदेह का बीज बोने की कोशिश करते रहते हैं देश को बाँटने का प्रयास करते हैं
देश ने भी हर बार इन बदइरादों का मुंहतोड़ जवाब दिया है
हमें निरंतर अपनी क्रिएटिविटी से प्रेम से हर पल प्रयासपूर्वक अपने छोटे से छोटे कामों में एक भारतश्रेष्ठ भारत के खूबसूरत रंगों को सामने लाना हैएकता के नए रंग भरने हैं और हर नागरिक को भरने हैं
इस सन्दर्भ में मैं आप सबसे एक वेबसाइट देखने का आग्रह करता हूँ ekbharatgovइन एक भारत डॉट गव डॉट इन
इसमें नेशनल इंटीग्रेशन की हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने के कई प्रयास दिखाई देंगे
इसका एक दिलचस्प कॉर्नर है आज का वाक्य
इस सेक्शन में हम हर रोज एक वाक्य को अलगअलग भाषाओँ में कैसे बोलते हैं यह सीख सकते हैं
आप इस वेबसाइट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट भी करें जैसे हर राज्य और संस्कृति में अलगअलग खानपान होता है
यह व्यंजन स्थानीय स्तर के ख़ास इंग्रीडिएंट्स यानी अनाज और मसालों से बनाए जाते हैं
क्या हम इन लोकल फूड की रेसिपे को लोकल इंग्रीडिएंट्स के नामों के साथ एक भारतश्रेष्ठ भारत वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं यूनिटी और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है
इस महीने की 31 तारीख़ को मुझे केवड़िया में ऐतिहासिक स्टेच्यू ओएफ यूनिटी पर हो रहे कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा
आप लोग भी जरुर जुड़ियेगा
मेरे प्यारे देशवासियो
31 अक्तूबर को हम वाल्मीकि जयंती भी मनाएंगे
मैं महर्षि वाल्मीकि को नमन करता हूँ और इस खास अवसर के लिए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ
महर्षि वाल्मीकि के महान विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं शक्ति प्रदान करते हैं
वे लाखोंकरोड़ों ग़रीबों और दलितों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद हैं
उनके भीतर आशा और विश्वास का संचार करते हैं
वो कहते हैं किसी भी मनुष्य की इच्छाशक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है
ये इच्छाशक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधारण कार्य करने की ताकत देती है
महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया उनके लिए सेवा और मानवीय गरिमा का स्थान सर्वोपरी है
महर्षि वाल्मीकि के आचार विचार और आदर्श आज न्यू इंडिया के हमारे संकल्प के लिए प्रेरणा भी हैं और दिशानिर्देश भी हैं
हम महर्षि वाल्मीकि के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगें कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की
31 अक्तूबर को भारत की पूर्वप्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी जी को हमने खो दिया
मैं आदरपूर्वक उनको श्रद्धांजलि देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो
आज कश्मीर का पुलवामा पूरे देश को पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है
आज देशभर में बच्चे अपना होम वर्क करते हैं नोट्स बनाते हैं तो कहींनकहीं इसके पीछे पुलवामा के लोगों की कड़ी मेहनत भी है
कश्मीर घाटी पूरे देश की करीबकरीब 90 पेंसिल स्लेट लकड़ी की पट्टी की मांग को पूरा करती है और उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी पुलवामा की है
एक समय में हम लोग विदेशों से पेंसिल के लिए लकड़ी मंगवाते थे लेकिन अब हमारा पुलवामा इस क्षेत्र से देश को आत्मनिर्भर बना रहा है
वास्तव में पुलवामा के ये पेंसिल स्लेट्स स्टेट्स के बीच के गैप्स को कम कर रहे हैं
घाटी की चिनार की लकड़ी में हिघ मॉइश्चर कंटेंट और सॉफ्टनेस होती है जो पेंसिल के निर्माण के लिए उसे सबसे सूटेबल बनाती है
पुलवामा में उक्खू को पेंसिल विलेज के नाम से जाना जाता है
यहाँ पेंसिल स्लेट निर्माण की कई इकाईयां हैं जो रोजगार उपलब्ध करा रही हैं और इनमें काफ़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं
पुलवामा की अपनी यह पहचान तब स्थापित हुई है जब यहाँ के लोगों ने कुछ नया करने की ठानी काम को लेकर रिस्क उठाया और ख़ुद को उसके प्रति समर्पित कर दिया
ऐसे ही कर्मठ लोगों में से एक है मंजूर अहमद अलाई
पहले मंजूर भाई लकड़ी काटने वाले एक सामान्य मजदूर थे
मंजूर भाई कुछ नया करना चाहते थे ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ ग़रीबी में ना जिए
उन्होंने अपनी पुस्तैनी जमीन बेच दी और एपल वुडेन बॉक्स यानी सेब रखने वाले लकड़ी के बक्से बनाने की यूनिट शुरू की
वे अपने छोटे से बिजनेस में जुटे हुए थे तभी मंजूर भाई को कहीं से पता चला कि पेंसिल निर्माण में पोपलार वूड यानी चिनार की लकड़ी का उपयोग शुरू किया गया है
ये जानकारी मिलने के बाद मंजूर भाई ने अपनी उद्यमिता का परिचय देते हुए कुछ फेमस पेंसिल मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स को पोपलार वुडेन बॉक्स की आपूर्ति शुरू की
मंजूर जी को ये बहुत फायदेमंद लगा और उनकी आमदनी भी अच्छी ख़ासी बढ़ने लगी
समय के साथ उन्होंने पेंसिल स्लेट मैन्यूफैक्चरिंग मशीनरी ले ली और उसके बाद उन्होंने देश की बड़ीबड़ी कंपनियों को पेंसिल स्लेट की सप्लाई शुरू कर दी
आज मंजूर भाई के इस बिजनेस का टर्नओवर करोड़ों में है और वे लगभग दोसौ लोगों को आजीविका भी दे रहे हैं
आज मन की बात के जरिये समस्त देशवासियों की ओर से मैं मंजूर भाई समेत पुलवामा के मेहनतकश भाईबहनों को और उनके परिवार वालों को उनकी प्रशंसा करता हूँ आप सब देश के यंग माइंड्स को शिक्षित करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं
मेरे प्यारे देशवासियो
लॉक डाउन के दौरान टेक्नोलॉजीबेस्ड सर्वाइस डिलिवरी के कई प्रयोग हमारे देश में हुए हैं और अब ऐसा नहीं रहा कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स कंपनीज ही यह कर सकती हैं
झारखण्ड में ये काम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने करके दिखाया है
इन महिलाओं ने किसानों के खेतों से सब्जियाँ और फल लिए और सीधे घरों तक पहुँचाए
इन महिलाओं ने आजीविका फार्म फ्रेश नाम से एक अप्प बनवाया जिसके जरिए लोग आसानी से सब्जियाँ मंगा सकते थे
इस पूरे प्रयास से किसानों को अपनी सब्जियाँ और फलों के अच्छे दाम मिले और लोगों को भी फ्रेश सब्जियाँ मिलती रही
वहाँ आजीविका फार्म फ्रेश अप्प का आईडीईए बहुत पॉपुलर हो रहा है
लॉक डाउन में इन्होंने 50 लाख रुपये से भी ज्यादा के फलसब्जियाँ लोगों तक पहुँचाई हैं
साथियो एग्रीकल्चर सेक्टर में नई सम्भावनाएँ बनता देख हमारे युवा भी काफी संख्या में इससे जुड़ने लगे हैं
मध्यप्रदेश के बड़वानी में अतुल पाटीदार अपने क्षेत्र के 4 हजार किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ चुके हैं
ये किसान अतुल पाटीदार के इप्लेटफार्म फार्म कार्ड के जरिए खेती के सामान जैसे खाद बीज पेस्टीसाइड फंजीसाइड आदि की होम डिलिवरी पा रहे हैं यानी किसानों को घर तक उनकी जरुरत की चीज़ें मिल रही हैं
इस डिजिटल प्लैटफार्म पर आधुनिक कृषि उपकरण भी किराये पर मिल जाते हैं
लॉक डाउन के समय भी इस डिजिटल प्लैटफार्म के जरिये किसानों को हज़ारों पैकेट डिलिवरी किये गए जिसमें कपास और सब्जियों के बीज भी थे
अतुल जी और उनकी टीम किसानों को तकनीकी रूप से जागरूक कर रही है ओन लाइन पेमेंट और खरीदारी सिखा रही हैं
इन दिनों महाराष्ट्र की एक घटना पर मेरा ध्यान गया
वहां एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने मक्के की खेती करने वाले किसानों से मक्का ख़रीदा
कंपनी ने किसानों को इस बार मूल्य के अतिरिक्त बोनस भी दिया
किसानों को भी एक सुखद आश्चर्य हुआ
जब उस कंपनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो नये कृषि क़ानून बनाये हैं अब उसके तहत किसान भारत में कहीं पर भी फ़सल बेच पा रहे हैं और उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं इसलिये उन्होंने सोचा कि इस एक्सट्रा प्रॉफिट को किसानों के साथ भी बाँटना चाहिये
उस पर उनका भी हक़ है और उन्होंने किसानों को बोनस दिया है
साथियो बोनस अभी भले ही छोटा हो लेकिन ये शुरुआत बहुत बड़ी है
इससे हमें पता चलता है कि नये कृषिक़ानून से जमीनी स्तर पर किस तरह के बदलाव किसानों के पक्ष में आने की संभावनायें भरी पड़ी हैं
मेरे प्यारे देशवासियो
आज मन की बात में देशवासियों की असाधारण उपलब्धियाँ हमारे देश हमारी संस्कृति के अलगअलग आयामों पर आप सबसे बात करने का अवसर मिला
हमारा देश प्रतिभावान लोगों से भरा हुआ है
अगर आप भी ऐसे लोगों को जानते हो तो उनके बारे में बात कीजिये लिखिये और उनकी सफलताओं को शेयर कीजिए
आने वाले त्योहारों की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुतबहुत बधाई
लेकिन एक बात याद रखिये और त्योहारों में ज़रा विशेष रूप से याद रखिये मास्क पहनना है हाथ साबुन से धोते रहना है दो गज की दूरी बनाये रखनी है
अगले महीने फिर आपसे मन की बात होगी
बहुतबहुत धन्यवाद